की और एक मोर पंख के साथ भगवान की मूर्ति रखी गई है।

कुछ लोग पूजा आराधना कर रहे हैं नीचे फर्श पर एक वाइट कलर का--

कपड़ा है जो कि येलोइश भी लग रहा है और पीछे जो मंदिर का बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर के कपड़े से ढ़का गया है।

इस इमेज में जो दिख रहा है वो एक नदी का दृश्य है जिसका पानी बिल्कुल नीट एंड क्लियर है।

और सामने की ओर एक पेड़ दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का है।

जिसका नाम होता है आलू जिसे इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं।

बच्चे व्हाइट कलर के हैं और सभी सोए पड़े हैं एक--

नाम समैया एग्रो इंडस्ट्रीज है जो की रेड कलर से हिंदी में लिखा गया है।

जो कि चॉकलेटी कलर का दिख रहा है सामने की तरफ एक गेट दिख रहा है जो की मस्टर्ड कलर का है।

एक स्टूल रखा है जो कि प्लास्टिक का ब्लैक कलर का स्टूल है। स्टूल के ऊपर एक बस्त्र पड़ा है जो कि लाल कलर का दिख रहा --

जिसमें बहुत से लोग हेयर कटिंग करा रहे हैं कुछ लोग हेयर कट कर भी रहे हैं।

इस इमेज में एक चूल्हा दिख रहा है जिसके ऊपर कोई भी बर्तन नहीं रखा है।

चूल्हा ईटों का बनाया गया है तथा एक लकड़ी उसमें जल रही है।

ऊपर की साइड में कैपिटल लेटर में इंग्लिश में व्हाइट कलर से एल_जी लिखा हुआ है।

उनमें से कुछ प्रेस हैं कुछ मिक्सी हैं और कुछ नीचे वूफर भी रखे हुए हैं।

जो बच्चे दोनों ड्रेस पहने हुए हैं उनमें से रेड कलर और एक मिडिल वाला बच्चा ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुआ--

और कुछ डेस्क भी बनाई गई हैं जिनमें सब में पर्सनल लाइट्स लगाई गई है।

थवि डेस्क का कलर चॉकलेटी कलर का है ऊपर सीलिंग फैन भी लगाया गया है।

किया गया है और साइड में एक टीन शेड पड़ा हुआ है टीन सेड में दो कारें खड़ी हुई है जो कवर से ढकी हुई है।

और बिल्कुल गुच्छे दार काले जामुन एक क्रेट में रखे गए हैं क्रेट के चारों तरफ अखबार से कवरिंग की गई है कोई--

बाइक को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक बुलेट है जो की रॉयन इनफील्ड कंपनी बनाती है।

खाना खा रहे हैं चारों तरफ टेबल्स पड़ी हुई हैं जो की चॉकलेटी कलर की दिख रही--

जो कि स्टील की कुर्सी है जिसका कलर ब्लैक कलर से किया गया है।

दीवार के पीछे बहुत सारी बाइकस खड़ी हुई हैं जो कि ब्लैक कलर की दिख रही हैं।

इसका नाम तो साफ साफ नहीं दिख रहा लेकिन कार्यालय में बहुत से लोग इधर उधर बैठे हु--

इनमें सबसे ऊपर का नारंगी कलर है और बीच का वाइट कलर और नीचे का ग्रीन कलर से रंगा गया है।

काउंटर पर कुछ डिब्बे रखे हैं जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की नमकीनें रखी हुई हैं।

टेंपल के सामने एक लोहे का गेट लगा है जोकि ब्लैक कलर का है।

में टेंपल के चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही है।

नीचे कुछ खिलौने लग रहे हुए हैं और खिलौनों में कुछ रेड कलर के खिलौने हैं। कुछ --

ये व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहने हुए हैं ग्राउंड में बहुत सारी ग्रीन ग्रास भी लगाई गई है।

तीन लोग खड़े हुए हैं एक इंसान का इंडिया का झंडा पकड़े हुआ है।

और एक इंसान एक बैग पकड़े हुआ है जो की स्काई ब्लू कलर का है उसकी पीठ पर एक बैग और टंगा है।

इस इमेज में एक पूजा स्थल दिखाया गया है जिसमें दो लोग पूजा कर रहे हैं।

जिस पर सामने की तरफ एक वाइट कलर की चेयर पड़ी हुई है तथा बैकग्राउंड चॉकलेटी है।

इस फोटो में जो दिखाया गया है वह एक घर या वह एक हॉस्टल लग रहा है।